ये कोई फील्ड की फोटो हैं जहां कोई मैच हो रही हैं यहाँ बहुत सरे लोग है इस फील्ड के चारो साइड टिने का कुछ बना हुआ हैं जहां बहुत सारे लोग खड़े है।

शायद इनसे डूबा नहीं जाता है सामने एक घर बना हुआ है जो बहोत ही अच्छी लग रही है ये आदमी ने येल्लो कलर की टीशर्ट --

एक टेम्पो सामने की ओर से आ रहा है एक बाइ सवार है जिसमे पिछे मेग्रेट कलर की बा टा--